और बैलून भी लगे हुए हैं व्हाइट रेड बैलून लगे हुए हैं एक घोड़े का चित्र बीच में दिखाई दे रहा है और चेयर भी रखी हुई दिखाई दे रही।

यहां पे पेंसिल भी दिखाई दे रही है और रिमोट वाले सेल भी दिखाई दे रहे हैं।

नीचे गंदगी पड़ी हुई भी दिखाई दे रही है।

कुर्सियों के बीच में दो कैरम बोर्ड रखे हुए हैं।

बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे है और उसके पीछे एक फुहारा भी दिखाई दे रहा है।

चित्र में एक औषधि केंद्र दिखाई दे रहा है भारतीय जन औषधि केंद्र।

साइड में एक पान खोखा भी है और ऊपर एक पंखा भी लगा हुआ है।

इस चित्र में दो लड़के और दो लड़कियां लैपटॉप पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।